अ टेबल कुर्सी लगाई हुई है और उसमें कुछ रखे हुए हैं और छोटे मोटे गमले भी रखे हुए हैं और पीछे की साइड में --

इस तस्वीर में मुझे दो मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसके बाहरी ओर ग्राउंड दिखाई दे रहा है और बाइक और साइकिल भी खड़े दिखाई दे रही हैं एक जोकि भाई साहब हैं जोकि --

और बीच में जो की रेलिंग लगाके एक पर्दा भी लगाया गया है बाहर के निकलने के लकड़ी का गेट भी लगाया गया है।

ये बैग रखे हुए हैं उनमें कपड़ों का सेटअप रखा गया है और नीचे ये नीचे में देख सकते हैं ये एक लेडिज सूट भी रखते हैं और यह एक बड़ा हॉल है जिसमें अंदर --

और एक दो व्यक्ति खडे बैठा भी नज़र आ रहा है और ये गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है ये मुझे एक एयरपोर्ट नज़र आ रहा है एयरपोर्ट पर गाड़ियां खड़ी हुई है।

ओमनी की वैन भी खड़ी हुई है एस_बी_आई बैंक का बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है ये एक सरकारी दफ्तर भी हो सकता है।

इस तस्वीर में मुझे एक स्कूल नजर आ रही है जो कि शहीद मेजर ध्यानथॉम्स राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लग रहा है ये एक--

ये एक कोने में देवी देवताओं धार्मिक स्थल भी बनाया गया है जहां पर देवी की जो देवताओं की जोकि फोटो लगाई गई --

अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रहे हैं ये एक स्टेशनरी दुकान है जहां हर प्रकार की किताबें मिल जाती हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि दो दुकाने मुझे सामने दिखाई दे रही है पास में छोटी मोटी भी दुकाने एक बड़ी दुकान भी दिखाई दे रही है।